और गमले ईंटे और टेबल है पब्लिक के अलग- अलग कलर है ।

पे पैर रखा है टेबल है अलग अलग कलर का टेबल --

आगे एक लड़का बैठा है नीचे टेबल है टेबल पे कुछ रखा है।

और एक आदमी बाइक पे जा रहा है ऊपर टावर बना है पीछे पेड़ है।

पहना है और मोजडी पहना है जूता पहना है ।

बस और उसके पीछे पेड़ है उसके पीछे पहाड़ है नीचे हरे चॉकलेटी चॉकलेटी --

दो गधे हैं गधा खड़ा है काले काले कान हैं ।

ट्रेन है आर_सी_बी आगे आगे आदमी खड़ा है झोला लेकर।

और गुलदस्ता रखा है पीछे सामान है बहोत सारी गाड़ी है।

एक पीला गुलदस्ता एक व्हाइट गुलदस्ता है और --